एक कांच की खिड़की लगी है कुछ और एक स्विच का बोर्ड लगा हुआ है।

तथा कुछ लाइब्रेरी जैसा सॉकेट लगे हुए है।

कुछ पीले रंग के सूखे पेड़ नजर आ रहे हैं।

यहां पर रैक में बहुत सारा सामान राशन का रखा हुआ नजर आ रहा है।

जमीन पर मिट्टी दिखाई दे रही है तथा कुछ लोहे के पाइप रखे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर पेंट की विभिन्न प्रकार की बाल्टियां एक के ऊपर एक रखी हुई नजर आ रही हैं।

कई सारे महिला और पुरुष जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

जमीन पर मिट्टी दिखाई दे रही है और कुछ सूखी पत्तियां जमीन पर पड़ी है।

एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है तथा रास्ते के बाएं तरफ कई सारे पेड़ पौधे और दाएं तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

में कई सारे बेड पड़े हुए हैं और जमीन पर टाइल्स लगी हुई है।

तथा दुकान की दीवार पर मेहंदी रंग का कलर लगा हुआ है।

जहां पर कई सारे सोफे और मेजे पड़ी हुई है।

एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपर बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है।

और जमीन पर लकड़ी के बर्तन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।